यहा का पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है यहा पे काफी पेड़ दिखाई दे रहे पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे पीछे कुछ पहाड़ नजर आ रहे पहाड़ काफी बड़े दिखाई दे र--

यहा पे काफी सारे लोग खड़े नजर आ रहे यहा पे काफी सारे लोग बैठे दिखाई दे रहे यहाँ पे काफी सारी मट्टी नजर आ रही है यहा पे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे यहा पे कुछ पेड़ नजर आ रहे पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे।

यहा पे काफी सारे लोग नजर आ रहे है यहा पे कुछ गाड़िया दिखाई दे रही है पीछे काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफ़ेद नजर आ रहा है यहा पर काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहा पर काफी सारे लोग नजर आ रहे। यहा पे ची नजर आ रही है। यहा पे काफी सारे पोस्टर दिखाई दे रहे। यहा पे काफी सारे मशिने नजर आ रही है।

बाहर एक डस्ट्बिन नजर आ रहा है डस्ट्बिन काले कलर का दिखाई दे रहा है यहा पर एक स्कूटी खड़ी नजर आ रही है यहा पर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है अंदर काफी सारी लाइटिंग दिखाई दे रही है बाहर काफी सारे टेबल चेयर नजर आ रहे।

यहाँ पर नैप्किन के स्टैंड नजर आ रहा है सामने एक गेट दिखाई दे रहा है गेट के बाहर काफी स्पेस नजर आ रहा है वहाँ पर कुछ टेबल दिखाई दे रहे है।

बिल्डिंग मे काफी सारे पानी के टंकी नजर आ रही है। बिल्डिंग के बाहर काफी सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग के ग्राउंड मे काफी सारे पेड़े नजर आ रहे है यहा पीछे काफी सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है पीछे काफी सारे घर दिखाई दे रहे है।